जमीन पर सफेद ओर भूरे रंग की टाइल्स लगीं हुई है ओर कागज पर बहुत सारे चित्र --

बंधान बैंक लिक्खा हुआ है।

पहाड़ियां है जोकि बहुत ही खूबसू --

सड़क के किनारे चढ़ने-उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुईं हैं बहौत सारे लोग वहाँ --

एक लाइन से गड्डे बनाये हुए हैं जिनमे तार पाइपें लगाई हुई हैं जोकि सफेद रंग की हैं काले रंग की --